इसमें पीछे की तरफ एक बड़ी चौकी बनी हुई है जिसके चारों तरफ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पे कुछ बाइक्स भी खड़ी हैं रिपेयरिंग के लिए थैंक यू लिखा है।

यह एक लाइब्रेरी की फोटो है जहां पे बहुत सी अलग अलग तरह की किताबें पड़ी हैं।

मंदिर में जाने के लिए बाहर कुछ छोटी मोटी दुकाने भी लगी हुई है।

आथी यहां पर एक महाराज जी आए हैं।

आगे कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

इसके बहोत सी खिड़कियां दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

और नीचे किताब बड़े लोगों के लिए और बड़े बच्चों के लिए साइकिल्स रखी हुई है।

जहां पर घर मे यूज मे होने वाले सारे घरेलू मशीनें मिल रही है।

जिसमें बच्चों का एग्जाम चल रहा है इसमें एक टीचर भी नजर आ रही है।

इसमें चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही है।